कुछ फ्राई कर रहे हैं ड्रेसेस कोड उनके ऑरेंज कलर के हैं एक कलर का हैट डाल के हैं।

स्वस्था -स्वच्ता का ध्यान रख रहा है बहुत केयर कर रहा है और एक इसमें दरवाजा है।

और इस छवि में एक लड़का खड़ा हुआ है जो जींस पहन के अपना पैक्स दिखा रहा है।

इस छवि में एक बुक स्टोर है उसका नाम सागर बुक डिपोर्ट है।

सोफे दिखाई गए हैं जो एक बड़ा सा सोफा तीनों के लिए बैठने के लिए दिया गया है।

तो इधर जा सकते है हॉस्पिटल के बाहर एक एंबुलेंस खड़ी हुई है।